और उसके सामने एक सफेद कलर की शर्ट पहन कर इंसान खड़ा हुआ है। यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

यहां पर एक स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर --

पीले रंग का शटर भी लगा हुआ है और गाड़ी भी खड़ी हुई है यहाँ पर बहोत सारे पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकानो के बाहर उनका पोस्टर भी लगा हुआ है।

दो पीले रंग के शटर भी लगे हुए है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। दुकान के बाहर एक बहोत बड़ा पोस्टर भी लगा है।

यह देखने में बहोत सुंदर दिख रहे हैं और वहाँ पर एक गेट भी लगा हुआ है और थोड़े आगे वहाँ पर एक --

दे रही है। यहाँ पर एक आदमी मूर्ति के नीचे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है।

कुछ लकड़ी के पटिए बने हुए है जहां पर सामान रखा हुआ है।